जहां पे अलग-अलग रैक में तरह-तरह के सामान रखे हुए हैं।

इस चित्र में उद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़वा दिखाई पड़ रहा है।

ये कुछ पेंट के डब्बे रखे है।

और नीचे लाल रंग का कारपेट भी लगाया है।

ऊपर के बल्ब भी लगाया हुआ है।

सामान रखा हुआ है सामने एक छठ का द्वारा लगाया हुआ है।

उसके चारों तरफ लाइटें भी लगाई गई हैं।

चारों तरफ हरियाली छाई है।

टेबल पर मशीनें रखी हैं।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

दुकान पे शिशा का काउंटर भी बनाया हुआ है।

अंदर पेट्रोल मशीन भी लगाया हुआ है।

किनारे पे फायर ब्रिगेड भी लगाया हुआ है।

एक कार है जो सफेद रंग का है।

इस चित्र में एक यूनिवर्सिटी है।

इस चित्र में एक विद्यालय दिख रहा है।

एक आदमी एक गाड़ी में बैठा है।